आस पास फूलों से तैयार किया गया है।

हैं जिसपे झालियां लगी हुईं हैं यहां पर काली ब्राउन कलर की भेडे हैं।

यह एक प्रिंटआउट मशीन बनी हुई है।

पीछे सफेद और काली कलर के जिम के मशीनें पड़ी हुई हैं।

यहां पर काफी तरह की बुक्स और पेने मिल रही है।